इस चित्र में सामने एक पार्क नज़र आ रहा है।

और सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

उसके बार एक छोटा सा मेन्यू लिखा गया है।

इस चित्र में एक बड़ी सी स्कूल की बिल्डिंग नजर आ रही है।

सोने से जोड़ी मुद्राएं नजर आ रही है।

गेट के पास चारों तरफ लोहे की ग्रिल्स लगाई गई हैं।

चित्र में एक ऑटो चालक ऑटो के पास खड़ा हुआ दिख रहा है।

एक कॉर्नर में दो काले रंग की कुर्सियां रखी गई है।

और एक महिला सैर करती हुई दिख रही हैं।

कुर्सी के ऊपर बैठी हुई नजर आ रही है।

सामने एक पीले रंग का ड्रम है।

जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी सफेद रंग की इमारतें नजर आ रही है।

चित्र में एक मस्जिद नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ चार मुस्लिम व्यक्ति सर पर टोपी लगाए एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं।

इस गेट के उस पार दो व्यक्ति और एक महिला जाते हुए नजर आ रहे हैं।

और एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।